यह मिठाई का दुकान है इसमें बहुत से प्रकार का मिठाईयो--

और फूलपत्ति का भी दुकान लगाया गया है कि शादी ब्याह में सजाने के लिए--

और पूजा की सामग्री बिक रही है इसमें बताशा भी है लड्डू भी है और --

इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक रहा है इसमें मोबाइल --

बहुत से शिक्षक यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बहुत से विद्यार्थी यहाँ क्लास भी करते हैं।

यहां पर लोग पैसा निकालने के लिए आते हैं और जमा करने के लिए भी आते हैं ये बहुत साफ सुथरा--

और यहाँ से लोन भी प्राप्त करते हैं।

जैम ओम मिलता है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसके लिए--

है यहाँ गांधी जी का चित्र दिखाया गया है जो कापड़ा--

और यहाँ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है जो बहुत ही आकर्षक के केंद्र है।

जहां से माल ले जाने में लाने में बहुत ही सुविधा जनक प्रकट होता है।

जगह से दूसरे जगह और भी सांवरिया जो है नीचे से आसानी से जा रहा है।

स्टोर है जहाँ पर दवाइयां खरीदी जा रही है।

मनाया जा रहा है डॉक्टर सर्व पली राधा कृष्ण--

और यहाँ हरियाली भी बहुत अच्छी से है जो --

यहाँ गिरजाघर को दिखाया गया है बगल में विद्यालय भी है।

यहाँ लड़कियों का ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ सिस्टम --

समस्या आने पर यहीं से इसका निदान किया जाता है।

का बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया गया है जो बच्चों को बहुत ही मनपसंद होता है।

यह फाइनेंस साथी का--

मिश्रा जी का दुकान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप --

यहाँ पर बहुत ही सफाई का ध्यान रखा गया है और--

लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आते जाते रहते हैं इस दुकान का बिक्री बहुत ही अच्छा चलता है।

पर छठ पूजा हो रहा है।

बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत है--

आस्था का प्रतीक सूर्य देव और छठी मैया का पूजा किया जाता है।

यहाँ बहुत सी आकर्षक लाइट --

अपने आस पड़ोस भी साफ सुथरा रखते हैं।

साफ सुथरा जगह पर बनाया गया है इसके किनारे एक रोड निकला हुआ है और यहां--

यहाँ पर लोग नीचे भी अपनी खेती आसानी से करते हैं।

जहाँ पर आज बहुत मात्रा में ग्राहक आए हुए हैं।

रोड के किनारे ही अपना सवारी लगा दिए हैं।

यह एक से बारहवीं कक्षा तक विद्यालय है इसका पार्क जो है--

बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत--